जो में आए वो नजर आए लगता है कि कार खराब हो गया--

इस तस्वीर में कोई देखाई दे--

स्पीड में हमको दिखाई दे रहा है।

और लगता है कि यहां पर लोग एक्सरसाइज बयाम जिम करता है उसी टाइप का नोजर आ रहा है एक पाया --

आगे टेबुल दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं आगे लाइट बत्ती दीपावली तरह जगमग जगमग हो रहा है।

और बाउंड्री जो है घेरा हुआ है वह नजर आ--

दीवार पर अ बहुत अच्छा है इस--